बोर्ड के ऊपर चार्जर लटका हुआ है।

ये एक कमरा है जहां पर मुख्य किस्म की चीजें दिखाई दे रही हैं और यहां पर--

और यहाँ पर एक नागरिक और एक महिला मजूद है नागरिक ने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है।

यहाँ पर हर एक चीज का रंग मुख्तलिफ है यहां पर एक लाल रंग के पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं जिनमें मुख्तलिफ चीजें--

जो कि मुख्तलिफ तरह के हैं और यहाँ पर बहुत सारी इमारत भी दिखाई दे रहे हैं जिनके रंग मुख्तलिफ है।

ये एक अमारत के बाहर के मनाजीर हैं जहां जो अमारत बहोत ही बड़ी दिखाई दे रही है।

और यहाँ एक सफेद और एक हरा रंग का बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां--

जिन्होंने एक नागरिक बैठ हुआ है और उसके हाथ में मोबाईल है और इसने काले रंग की--

और यहां पर हरी हरी घास भी मौजूद है जैसे ये मंजर बहोत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है।

बर्तन मौजूद है कुछ बर्तनों को ऊपर लटकया हुआ है जोकि टोकरी नुमा है और इन का रंग--

इनमें से हर तरह के बर्तन है यहाँ पर सफेद रंग के डोंगे दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही दिलकश है।

इसमें सफेद और इसमें लाल और पीले रंग के फूल भी खिले हुए हैं और यहाँ पर बहुत बड़े दरख्त भी मजूद हैं।